इसमे देख सकते हैं दोस्तों ग्राउन्ड है कुछ खिलाड़ी हैं और ये देख सकते हैं भाईसाब टीचर --

देख सकते है एक शानदार पानी दिख रहा है तालाब छोटा सा कुछ झाडिया दिख रही है इसमें--

पंछी की चोंच दिख रही है पंछियों की पंख दिख रही है देख सकते है शानदार तरीके--

देख सकते है दोस्तों यहा कॉफी कप रखे हुए है दो चम्मच है कप मे कॉफी बनी हुई रखी हुई रखी है चाय रखी हुई है।

यहा पे देख सकते है दोस्तों शॉप है यहा पे डायरियां रखी हुई है।

देख सकते है जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है बहुत सारा समान कॉपी किताब रखा हुआ यहा पे--

बहुत सारी टेबल्स रखी हुई है चेयर्स रखी हुई है टेबल्स के अंदर कुछ देख सकते है ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है इसमें कुछ पिक्चर्स चिपकी हुई है देख सकते है।